जोकि आधे झुके हुए मुद्रा मे है कुछ बैठे हैं।

अंदर का घर है सिंक लगी हुई है सिंक के ऊपर टोटी लगी हुई है।

मिट्टी पड़ी हुई है नीचे एक आदमी है जिसके हाथ में सरिया लगी हुई है।

साइड में एक गेट है लोहे की पांच कुर्सियां रखी हुई हैं।

हरे कलर की पैकेट है लाल कलर की है पीले कलर की है गुलाबी कलर की है।